कपड़ा रखा है जो कि बहुत ही अच्छा है और यहां पे बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है।

और यहां लाइट्स भी लगी हुई है।

मुझे ऊपर इसमें छत्री दिख रही है और ब्लैक कलर की टंकी है और इधर उधर यहां पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत अच्छे से सजाया हुआ है।

और पीछे यहां पे मुझे जंगल दिखाई दे रहा है और--

और अभी यहां का मौसम अच्छा नहीं दिख रहा है।

यहां पर मुझे कपडो की ढेर लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और कांच के यहां पे जो है टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं।